यहां पर एक आदमी ने भूरे रंग का जैकेट पहना हुआ है।

और उसमें बहोत सारे टायर भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड पौधे हैं।

यहां पर बहोत सारे तारे लगाई हुई है यहां पर पीछे में बहोत सारे ट्रक्स खड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

पर बाहर में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं घासफूस हैं।

और यहां पर बहुत सारे आदमी और औरतें हैं।